उसके सामने थोड़ी थोड़ी घास भी जमी हुई है और यहां एक कुर्सी भी दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ एक आदमी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा है।

यहां चद्दर के ऊपर एक बोरी भी डाली हुई है।

सामने की तरफ एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसके पीछे कुछ मोर के पंख भी लगे हुए हैं।

मंदिर पर राधे राधे भी लिखा हुआ है और नीचे की तरफ नारियल भी रखा हुआ है जिस पर लाड़ लाल कपड़ा बंधा हुआ है और यहां एक घंटी भी रखी हुई है।